सूखे पेड़ सफेद कलर के है हरे कलर के है नीले कलर के है।

मिट्टी है सफ़ेद कलर की है। पिले कलर की है टी_शर्ट है पिले कलर की ब्लू कलर की।